यहाँ एक पत्थर है जो की पत्थर में काफी काइ लगी हुई है ऊपर से पानी --

यह एक दुकान है जो साइकिल की है काफी साइकिलें रखी हुई हैं।

नीचे काफी वाइट रेड येल्लो काफी गेंद रखी हुई है।

और बीच में झंडा है और अगल-बगल काफी परदे लगे हुए हैं।